सामने मै एक ढाबा देख पा रही हूं।

यहां पे पीछे वाले कुर्सी पे कुछ पुलिस ऑफिसर बैठी के खाने खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

सारे कुरकुरे चिप्स आदि टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगल के दीवार में कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

यहां पे मैं एक पेड़ की डाढी देख पा रही हूं।

साइड में एक बड़ा सा डिब्बा रखा गया है बगल में एक ड्रम भी है।

जिनके ऊपर छड़ निकला हुआ है।

सामने में एक स्कूल की बिल्डिंग देख पा रही हूं।